एक सब्जी की दुकान है। उस पर कुछ मिर्चियाँ रखी हुई है टिंडे रखे हुए हैं तथा एक कुत्ता बैठा हुआ है और कुछ आदमी लोग खड़े हुए हैं।

एक बहुत अच्छी सी दुकान है। उसमें कुछ गर्ल्स एंड बॉयस के कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं।

और लड़के ने हाथ में बैट पकड़ा हुआ है ऐसा लग रहा है की गेंद उसके पास आ रही है और पीछे के लिए एक लड़का भी हुई है।